यह एक फेमस कॉलेज है | जहां पर सब लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपना दाखिला करते हैं | और अपना भविष्य बनाते हैं| अपने रुचि का सब्जेक्ट विषय लेकर|

यह एक मछली का दुकान है जहाँ पर जो लोग मछली पसंद होता है वो लोग मछली खरीद कर खाते हैं और बहोत सारे लोग खाते हैं बहोत सारे लोग नहीं भी खाते हैं और ये जब बाहर जाया जाता है तो वो लोग शुभ मान कर खाते हैं और तब कोई कार्य करते--